जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारी सेंटिनीगे नजर आ रही हैं सेंटिनीग लगे हुए खंबे भी नजर आ रहे हैं कुछ खंबे --

और सामने एक खिड़की भी नजर आ रही है दिन का वक्त मालूम होता है और नीचे बहुत सारी धूल भी पड़ी हुई नजर आ रही है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक जंगल नजर आ रहा है जंगल के अंदर बहुत सारा पहाड़ भी नजर आ रहा है और उसके पहाड़ में लगे हुए बहुत सारे पौधे और पेड़ भी नजर आ रहे हैं एक --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक दुकान नजर आ रही है दुकान के अंदर बहुत सारे कागज के कोखे रखे हुए नजर आ रहे हैं और --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक कुराने की दुकान नजर आ रही है और उसमें बहुत सारा सामान भी रखा हुआ नजर आ रहा है बाहर कुरकुरे टंगे हुए नजर आ रहे हैं और उन--

और ग्राउंड की दीवार भी नजर आ रही है सामने और बिल्डिंगे नजर आ रही हैं और उनकी खिड़कियां भी नजर आ रही हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक हॉल नजर आ रहा है हॉल के अंदर बहुत सारे लाइटें भी लगी हुई नजर आ रही है और पीछे टंगी हुई लडि़या भी नजर आ रही है सामने बहुत सा--

जैसे की मैं देख पा रही हूं एक बड़ा सा तालाव नजर आ रहा है तालाव के अंदर बहोत सारी बोडे चलती हुई नजर आ रही है।

और बोर्डो के किनारे लगा हुआ एक पुल भी नजर आ रहा है और उसमें लगा एक पौधा भी नजर आ रहा है सामने एक बैग टंगा हुआ नजर आ रहा है और एक लाइफ जैकिट भी रखी हुई नजर आ रही है।

और उनके पीछे एक लड़का भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है और उसके पीछे एक आदमी भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है सामने फर्श वाइट कलर का नजर आ रहा है और रेलिंग भी लगे हुए नजर आ रही है।

और सामने एक साइकिल भी खड़ी हुई नजर आ रही है और उसके ऊपर रखी हुई गैस की टंकी भी नजर आ रही है।

उसी के सामने एक काले कलर की बाइक भी खड़ी हुई नजर आ रही है और एक दुकान में कांच का गेट भी नजर आ रहा है और ऊपर टंगे बहुत सारे पंपलेट भी नजर आ रहें--

और उसी के ऊपर एक व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट भी लगी हुई नजर आ रही है और सामने ही स्विच बोर्ड नजर आ रहा है।

कुछ भगौने रखे हुए नज़र आ रहे है एक भगवान की मूर्ति रखी हुई नज़र आ रही --

सामने औजार भी रखे हुए नजर आ रहे हैं और ऊपर लाइट भी जलती हुई नज़र आ रही है और नीचे एक बोर्ड भी नज़र आ रहा है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है ।

और नीचे रखा हुआ एक गैस भी नजर आ रहा है और इंडेक्शन भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

और स्विच बोर्ड भी लगा हुआ नजर आ रहा है और उसमें लगा हुआ व्हाइट कलर का चार्जर भी नजर आ रहा है और गैस जलाने के लाइटर भी नजर आ--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने दो शॉप नजर आ रही हैं एक शॉप के अंदर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ नजर आ रहा है और एक एग्जॉस्ट फोन लगा हुआ नजर आ रहा है।

और बाहर बहुत सारी बाइके भी खड़ी हुई नजर आ रही है और साइकिल भी खड़ी हुई नजर आ रही है और बगल में ही एक सफेद कलर का स्टूल रखा हुआ नजर आ रहा है और--

और दुकान के अंदर बहुत सारी बुकें रखी हुई नजर आ रही हैं और बाहर दो एक लड़के भी खड़े हुए नजर आ रहे--

और दो लड़के भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारे पाउच भी टंगे हुए नजर आ रहे हैं कुछ शैंपू के पाउच है और कुछ गुटके के पाउच भी रखे हुए नजर आ रहे हैं ।

और एक शिप भी नजर आ रही है और शिप के अंदर लगे हुए बहुत सारे तार भी नजर आ रहे हैं।

और पुली भी नज़र आ रही है और बहुत एक घर भी बना हुआ नज़र आ रहा है और उसकी खिड़की --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक आदमी नजर आ रहा है और उसकी कार भी नजर आ रही है और वह कार पे पेंटिंग करता हुआ नजर आ रहा है --

और कुछ कागज के खोके भी रखे हुए नजर आ रहे हैं और नीले पीले कलर की कुछ साड़ियाँ --

देख पा रही हूं एक रूम के अंदर चार खंबे नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर फूलों से सजा हुआ कुछ नजर आ रहा है।

खिड़कियों पे सफेद कलर के पर्दे भी टंगे हुए नजर आ रहे हैं और पीले कलर की दीवार भी नजर आ रही है।